दिए गए इमेज में हमें दो बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं जो सुनहरे रंग से पेंट हैं और एक साइड हरे रंग से भी पेंट हैं। इसके --

किनारों मे घास लगे हुए हैं और सामने कुछ मिटटी भी नजर आ रही है। उसके सामने हमें पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

दिए गये इमेज में हमे कई तरह की मशीनें नजर आ रही है और उपर टिन की शीट नजर आ रही है उसमे --

काम होते हुऐ नजर आ रहा है। सामने दो लोग खड़े हैं और उ आ दीवार सफ़ेद रंग की है।

दिए गये इमेज में हमें एक पक्की सड़क नजर आ रही हैं उसके ऊपर बोहोत बड़ी मार्केट नजर आ रही है।

दिए गए इमेज में एक ऑफिस नजर आ रहा है। जिसमे एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है उसने लाइट कलर के शर्ट पहनी हुई और ग्रे कलर पैंट पहना हुआ है और उसने काला --

हल्के रंग की शर्ट पहने और अपने गले में एक रुमाल बांध रखा है और एक साइड में एक आदमी जा रहा है ऑरेंज रंग का शर्ट और--

ए गए इमेज में हमें एक एरोप्लन में नजर आ रहा है जिसमे वो सफ़ेद रंग का है जिसमे लिखा है स्पा स्पाइसी जेट डॉट कॉम --

से पेंट किया गया है और एक तरफ पेड़ भी नजर आ रहे हैं। सामने कई तरह की बिल्डिंगों की रैलिंग भी दिख --

आ बच्चे है। जो गेम करते हुए नजर आ रहे है। कोई लाल रंग की कुर्सियों मे बैठे हुए एक --

तरफ तीन खुर्सिया हैं जो लाल रंग की है। उसमे एक आदमी बैठा हुआ है नीले रंग की कपड़े पहन --

आज जिन्होंने कई रंगों के कपडे पहन रखे हैं और एक तरफ नदी के किनारे अ पत्थर भी अ रखा हुआ नजर आ रहा।